इस फ़ोटो मे मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने दोनों हाथ पीछे की ओर किए हुए है।

लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पीछे की साइड में बल्ब लगा हुआ दिखाई दे रहा है। एक लड़-लड़का खड़ा हुआ है।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

और उसकी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं। साइड में एक दीवाल दिखाई दे रही है प्लैन --

इस फ़ोटो में मुझे एक बड़ा-सा दरवाजा दिखाई दे रहा है जिसमें पेंटिंग की गई --

रूम की खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं दोनीचे के फर्श दिखाई दे रही है।

आता हुआ और एक औरत दिखाई दे रही है जिसके हाथों में बैग टांगे हुए है।

नदी में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और दो लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी ऊपर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फ़ोटो में मुझे एक स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है।

स्टेज को गुब्बारों से सजाया गया है जिसमें लाल कलर के और सफ़ेद कलर के गुब्बारे लगे हुए हैं।

और उसपे स्टेज पे हैप्पी बडे लिखा हुआ है।